और बाहर ग्राउंड में कुछ हरी हरी घास भी दिखाई गई है।

इस फोटो में एक छत दिखाई गई है।

और पीछे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं।

इस फोटो में एक पार्क दिखाया गया है और एक लोहे की सीढी --

कुछ पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं और एक पाइप भी पड़ा हुआ है।

पीछे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं।

पीछे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं।

और कुछ सुखी बेल भी लटकी हुई है।

और उसके बाहर कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है और कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं और--

इस फोटो में एक रास्ता दिखाया गया है जीस पे कुछ आदमी और लेडिस खड़े हुए हैं।

इस फोटो में कुछ काउंटर दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर कुछ लाइट भी लगी हुई है औ--

नीचे एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ है और ऊपर एक टिन की चद्दर --

और एक रेडा भी खड़ा हुआ है और कुछ टाइल भी बिछी हुई हैं।

इस फोटो में एक लाइब्रेरी दिखाई गई है।

कुछ ड्राम भी रखे हुए हैं और एक सीढ़ी भी रखी है।

नीचे कुछ पाइप भी पड़ा हुआ है।

जिस पर एक आदमी भी खड़ा है।

इस फोटो में एक मकान दिखाया गया है।

और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाया गया है।

इस फोटो में एक नदी दिखाई गई है।

इस फोटो में एक कोचिंग सेंटर दिखाया गया है।

पीछे कुछ खंभे गड़े हैं जिन पर--

और बराबर में एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।